और रथ में बहोत सारे फूल मालये केला पत्ता इत्यादि लगाया गया है।

और यहाँ पे मैंम लोग भी इन लोगों को देख रही हैं। सभी बच्चे रंगीन कपड़ें में दिखाई पड़ रहे हैं।

और चर्च के अगल-बगल काफी पेड़ पौधे हैं।